यहाँ देखिए लग रहा है की क्रिस्टल बस सर्विस है। हमारे यहाँ आत--

बसें हर सामान उचित किराए पर--

बहोत ही सुहाना पल नजर आ रहा है।

अभी पानी पर नहीं उतरा जमीन पर ही है जो काफी अच्छा लग रहा है इसे उतारेगा।

देखिये पीछे का जो है वह मंदिर है उसका जो मेन गेट है वो भी काफी अच्छा है।

कई बार काफी अच्छे-अच्छे से कपडे वगैरह पहनने हुए हैं। जो पत्थर है वो काफी भयानक देखने में लग रहा है।

झंडा है जो तीन रंग का जो भारत का शान है आन है मान है।

लगाया गया है ऊपर में देखिए काफी अच्छा लग रहा है।

आप यहाँ पर देख सकते हैं फैन वगैरह काफी ज्यादा लगे हुए हैं। लाइटिंग वगैरह भी काफी ज्यादा लग रहा है।

गेट लग रहा है। ये बहोत घड़ी भी यहाँ दिया गया है।

ये खिड़कियों पर काफी अच्छा लग रहा है। ये बेंच पर सब काम कर रहे हैं खड़े खड़े।

यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बनाया गया है जो घर बनाया गया है।

सब अपने से मतलब है दूसरे से कोई मतलब नहीं। देखिये कितने अच्छे तरीके से सब पढ़ाई कर रहे हैं।

यहाँ चिपकाया गया छोटा सा पेपर लिख के देखिये उधर भी काफी ज्यादा भीड़ लग रहा --

अभी तो कुछ कम ही लग रहा है लेकिन बोहोत ही अच्छा लग रहा है जिओ फाइबर वगैरहभी लगाया गया है।

यहाँ पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता चूकि यह इलेक्ट्रिक से --

जिधर भी नजर दौड़ रही है उधर ही फूल ही फूल नजर आ --

ये बहोत ही ज्यादा साउंड करता है। देखने सुनने में।

दोस्तों आप यहाँ देख सकते है कि यह घर --

उधर डाइनिंग टेबल भी लगाए गए हैं। देखिये इसका जो डिजाइनिंग घर का डिजाइनिंग --

तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मैन गेट है इसका जो डिजाइनिंग है --

अम्म देखिये एक लॉक भी लगा हुआ लग रहा है।

इसका डिजाइनिंग काफी अच्छा लग रहा है।

तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं की यहाँ स्टेशनरी --

होर्लिक्स भी गए हैं और देखिये बैग वगैरह भी रखे गए हैं।

दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं की यहाँ चारो तरफ फूल लग रहा है।

अपोज़िशन पार्टी बैठी हुए भी हैं। फील्ड क्रीज़ फील्ड के बाहर देखिये काफी बड़े बिल्डिंग भी लग है आस-पास। बहोत अच्छा खेल है यह।

जो काफी कोई चीज का टंकी वगैरह लग रहा है देखिये।

आसमान भी दिख रहा है काफी अच्छा। काफी बड़े-बड़े बिल्डिंग्स भी हैं आस-पास।

कुछ डांस का है ।

क्रिएटर डांस एकेडमी जैसे लिखा गया है --

ये बहोत ही सुंदर लग रहा है देखिये यहाँ जो --

ये बहोत ही खराब बहोत ही ज्यादा खराब सेंध कर रहा होगा।

इधर काफी पेड़-पौधे लग रहे हैं। आस-पास बहोत ही ज्यादा पेड़-पौधे लग रहे हैं।